एक मंदिर है और मंदिर के बाहर में एक पोस्टर लगा हुआ है।

इस साइड में सजा के दिया गया है फूल से और पत्ता से और सैलून में ऐना लगा हुआ है।

उसपे छापा हुआ है घास घूस और यह बीच में एक ब्रेंच --

बीच से रोड में एक आदमी जा रहा है जिसके हाथ में एक छाता है।

और यहां ऊपर में भी तीन आदमी है।

घर के दीवाल में एक पोस्टर लगा हुआ है।

और यहां पर सामने में ही एक आदमी खड़ा है और उसके बगल में एक और आदमी खड़ा है।

उसके आगे में एक घर है और घर के आगे एक और पेड़ है।

पेंट है तेल है और बहुत सारा सामान है।

आदमी जहां पर खड़ा है वहां पर एक हरा कलर का दरी है।

और एक और कुर्सी है।

और उसके इस साइड में कूलर लगा हुआ है।

पंख लगा हुआ है और ऊपर में लाइट लगा हुआ है बड़ा बड़ा सफेद कलर का लाइट और नीचे में टेबल है।

ऊपर में एक ब्लैक कलर का पंखा लगा हुआ है नीचे में बहुत सारा कुर्सी है।

एक रूम है यहां पर बहुत सारी महिलाएं हैं।

एक पानी का बोतल है और उस साइड में खटिया रखा हुआ है।

और दो पुतला है उस पुतला को कपड़ा पहना दिया गया है।

जिसके ऊपर में कपड़ा रखा हुआ है और इस साइड में एक आदमी बैठा हुआ है और इस साइड में एक आदमी कपड़ा दिखा रहा है।

जो कि जिसमें अंदर में एक कुर्सी है और एक टेबल और उस साइड में सेटर लगा हुआ है।

और पीछे का करकट लगा हुआ है और बीच में दोनों पट्टी कार के खंभा खड़ा है।

उसके आगे कर बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है।

यहां पर एक बास का मचान बना हुआ है।

के ऊपर से आ रहा है और उस साइड में ईंट का घर है ।

पर एक बच्चा खड़ा है जो अपना कमर में हाथ रखा हुआ है।

एक पेट्रोल पंप है जिसके ऊपर में बहुत सारा लाइट लगा हुआ है सफेद कलर का और पेट्रोल पंप के सामने में ही एक पौधा लगा हुआ है।

और उसके आगे का एक घर है और एक और पौधा लगा हुआ है।

इसमे बहुत सारा सामान रखा हुआ है और एक और कांउटर है जहां पर एक फोन पे का स्कैनर है।

ऊपर लिखा हुआ है माँ राज मेवा दुकान के अंदर में पंखा लगा हुआ है बल्ब लगा हुआ है।

और वहां पर आगे में बहुत सारा आदमी है।

एक गुफा है पहाड़ का जिसके चारों पट्टी पत्थर ही पत्थर है और बीच में एक आदमी खड़ा है।

बहुत बड़ा मैदान है जहां पर गड्ढा कर रहा है।

वहां पर एक काउंटर बना हुआ है उस काउंटर के ऊपर सामान रखा हुआ है।